ग्राउंड है। उसमें बोहोत सारे दुआ लगी हुई हैं। व्हाइट कलर की लाइन खींची हुई है। वहाँ पे तीन खम्भे गड़े हुए हैं।

पीछे ब्लू कलर का रेड कलर का दुपट्टा डला हुआ है।

वो सारा पानी भरा हुआ है जिसमें फुब्बारे चल रहे है।

बाइक उक का शोरूम हैं। वहां पे दो इंसान खड़े हुए हैं मैजिक के पास में --

यह सारी जनता निकल के जा रही है।

गिट्टीयों की तगाड़ी सिर पर रख रहे हैं और ले ले के जा रहे।

नाव है। नाव में बोहत सारे इंसान हैं बैठे हुए हैं। ब्लू कलर की नाव है जिसमे लोह लकड़ी से --

छारो तरफ पेड़ खड़े हुए हैं। से घर बने हुए हैं। ये घरों का कलर अगल-अगल है।

बहुत सारी लेडीज हैं और लड़कियाँ हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ है। इसने ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी है। बहोत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं जिनका कलर ब्लैक है।

गेटअप बना के रखा हुआ है। अलग-अलग कपडे पेर् रैं किसी ने पिंक कलर किसी ने येलो रेड कलर --